यहां पर कई सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है जिनका कलर ब्लैक ग्रीन दिखाई दे रहा है और कुछ पक्षी दिखाई दे रहे है जिनका कलर व्हाइट और--

ओर कुछ पक्षी दिखाई दे रहें हैं जिनका कलर येलो रेड दिखाई दे रहा है जाली का कलर --।

यहाँ पर कुछ बैलून दिखाई दे रहें जिनका कलर व्हाइट रेड दिखाई दे रहा है कुछ पेंटिंग दिखाई दे रहीं हैं।

यहा पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसका कलर ग्रीन ऑरेंज पिंक और ग्रे दिखाई दे रहा है यहा पर --

यहाँ पर कई सारा समान दिखाई दे रहा है और कई सारा फर्निचर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कई सारे वे कलर दिखाई --